जहाँ दीवार में हमको चारठो पेंटिंग दिख रही है इसको --

इस बैनर के बगल में एक पीले रंग का --

इसमें खाने का आइटम रखा हुआ है जो की बहुत ही छोटी-छोटी पीसेस में है।

इस तस्वीर में हमको एक मस्ज़िद दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद और हरे रंग से पोती हुई है।

इस तस्वीर में हमको बैंक ऑफ़ बड़ौदा का बैनर लगा दिखाई दे रहा है उस बैनर के बगल में एक दरवाजा है।

यहाँ की दीवारें बहुत हीं चमकीली और सफ़ेद नज़र आ रही हैं इसकी फर्श में --

यहां कई सारे टायर पड़े है जो की रंग बिरंगे नजर आ रहे है और यहां एक सज्जन सफेद रंग के शर्ट पहने हुए खड़े है।

फोटो में हमको एक किराना की डुकान नजर आ रही है जहाँ हमको लाल रंग का काउंटर दिख रहा है इस काउंटर के ऊपर एक टॉवल कांटा रखा हुआ है।

उसने अपनी कमर के ऊपर हाथ रखा हुआ है।

इस फोटो में हमको बहूत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जिसके अंदर छोटी-छोटी अलमारियाँ बनाई गई है।

इस तस्वीर हमें एक जिम खाना नज़र आ रहा है जिम खाने में बहुत सारी मशीनरी नजर आ रही हैं।